एक पीला की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और --

अच्छे नहीं दिख रहे हैं जो काफी ख़राब लग रहे हैं और काफी खरा --